हुए हैं माँ भी दिखाई दे रहा है।

मकान दिखाई दे रहा है | मकान बहुत सुन्दर लग रहा है बहुत लग रही है | मरकरी भी लगी हुई मरकरी जल रही है और --

एक मकान है | मकान के अंदर एक हॉल है हॉल में एक आसन पड़ा हुआ है कार्पेट भी बिछा हुआ है और --

एक मकान दिखाई दे रहा है | मकान में सफ़ेद कलर की पेंट हो रहा है क्योंकी रंग लगी हुई है कोई डिज़ाइन वगेरा भी बनी हुई है |

रोड जा रहा है रोड पे कोई स्कूटी पे दो गर्ल्स जा रही है | एक गाड़ी पे एक जेंट्स जा रहा है | ऑटो पे --

और पेंट भी हो रहा है हरा-हरा कलर का।

इधर मैन गेट लगा हुआ है वो तार का लगा हुआ है अंदर तरफ --